सामने एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है जहाँ पर बहोत सारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बोहोत लोग अपनी गाड़ियों की लाइन लगाके खड़े हैं।

और खिड़की का रंग भी ब्लू है और सामने एक आदमी है जो मोबाइल चला रहा है येलो कलर की टी-शर्ट पहनी है।